यह एक प्लेग्राउंड मैदान यह एक प्लेग्राउंड मैदान है जोकि काफी बड़ा और काफी अच्छा अं यहाँ पर --

घरों में पोहचाता है लेकिन आज के आधुनिकरण युग पर --

ऐ इस मंदिर में माँ दुर्गा की परतीमा भगवान की परतीमा लगाई है जो कि काफी सुंदर और काफी अच्छे तरीके से --

यह एगो फल एवं वहां ड्राईफ्रूट की दुकान है जिसका नाम माँ चंचला --

ये काफी अच्छा रेट दिया जाता है और ज्यादा सोने में परोफिट दिया --

यहाँ पर बहोत अच्छे-अच्छे मशीनों बिठवा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी पर काम किया जाता है और यहाँ पर काफी अच्छे इंजिनियर उपलब्ध हैं।

यह एक बस स्टैंड है जोकि सरकारी बस स्टैंड है इसको काफी अच्छा और बढ़िया बनाया गया है यहाँ पर सरकारी बसों का ठेहराव होता है।

अच्छे रेट में यहाँ पर फल दिया जाता है। जिससे लोग दूर-दूर से यहाँ पर फल खरीदने आते है।